ये एक बुक स्टाल है इस बुक स्टाल में बहुत सारी बूके रखी हुई है यहाँ पर बहुत सारे फेविकोल रखी हुई है।

बहुत सारे बड़े-बड़े छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है!

इस दुकान के आस पास में दो शटर लगे हुए है।

यहाँ पर दो बड़ी-बड़ी बोटल रखी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे पथरो की सीडिया बानी हुई हैं पथरो की दीवार है और पथरो का ही --

बर्फ भी रखी हुई है और एक तराजू रखा हुआ है लेली पॉप रखी हुई है।

यहाँ पर दो पंखे लगे हुए हैं कुछ लोग --

ये एक डेयरी फॉर्म है यहाँ पर बहुत सारे लोग सामान खरीद रहे है बहुत सारा सामान टंगा हुआ है फूलो की झालर--

बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है फेविकोल टंगे हुए है यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है।